एक टेबल भी देखने में मिल रहा है।

बहुत सारा फूल भी देखने मिल रहा है।

दरवाजा भी देखने को मिल रहा है।

चश्मा का पोस्टर भी देखने मिल रहा है।

हमें इस तस्वीर पे लाइट भी देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर पे हमें इंसान भी दिखाई दे रहा है।

दीवार भी दिखाई दे रहा है।

फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड लिख के दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे हमें इंसान में मिल रहा है।

इस तस्वीर पे हमें पाइप देखने मिल रहा है।

ग्लास दिखाई दे रहा है।

दरवाजा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बैलून दिखाई दे रहा है।

मीटर दिखाई दे रहा है।

ब्लू रंग का पाइप दिखाई दे रहा है।

सिलेंडर दिखाई दे रहा है।

वॉल में बहुत सारा डिजाइन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पे हमें शराफ डेली मिल रहा है।

इस तस्वीर पे हमे सब बुंदेली मिल रहा है।

लकड़ी का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है।

हमें इस तस्वीर पे बहुत सारा इंसान भी देखने मिल रहा है।

रास्ता भी देखने मिल रहा है।

मे इस तस्वीर पे घर देखने में मिल रहा है।

इस तस्वीर पर हमे थाली दिखाई दे रहा है।

हमें इस तस्वीर पे एक इंसान देखने मिल रहा है।

इस तस्वीर में दो पोस्पि दिन मिल रहा है।

बोगा रंग का दीवार भी देखने मिल रहा है।

नेवी ब्लू कलर का पैंट पहना दिखाई दे रहा है।

पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

हमें इस तस्वीर पे बहुत सारा चेयर देखने मिल रहा है।

हमें इस तस्वीर पे एक घर भी देखने मिल रहा है।

हमे इस तस्वीर पे लाल रंग देखने को मिल रहा है।

गाड़ी भी तो नहीं मिल रहा है।

बहुत सारा पेर भी देखने मिल रहा है।

इस पिक्चर पे ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

गेट भी दिखाई दे रहा है।

ग्रास भी देखने मिल रहा है।

ऊपर मे बहुत सारा लोहा टेने मिल रहा है।

मशीन भी देखने मिल रहा है।